यह कोई बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है जो कि--

यह एक बड़ी सी दुकान दिख रही है।

उस पर लाइट जल रही है।

सब लोग देखने आए हुए हैं।

हरे कलर की दीवार पुती हुई है जो कि बहुत गंदी लग रही है उसके ऊपर मनी प्लांट लगा हुआ है।

छोटे-छोटे घर भी दिखाई दे रहे हैं।

दुकानें टैटू की दुकान है चाइनीज की दुकान है फास्ट फूड की दुकान है।

ब्लैक कलर की पैंट पहना हुआ है।

छोटी बॉलें रखी हुई हैं जो रेड व्हाइट ब्लू येलो कलर की हैं।

बच्चों की चीजें रखी हुई हैं।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

यह एक ज़ू का सीन दिख रहा है।

और नीचे रेड कलर की चादर बिछी हुई है।

और कुछ सेब भी डले हुए हैं।

पर यह सीन समझ में नहीं आ रहा कि एग्जैक्ट --

और कुछ लोग भी दिख रहे हैं।

अच्छे डिजाइन से कटे हुए हैं।

यहां पर बड़ा सा गार्डन दिख रहा है।

उस पर लिखा हुआ है वन विहार।

बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं।

आदमी भी हैं और औरतें भी हैं।